मुझे एक मॉल दिखाई दे रहा है।

कुछ तारे भी दिखाई दे रही है।

छत के ऊपर बहुत सारे गुब्बारे लगाए गए हैं गुब्बारे में सफेद हरा और संतरी रंग के लगाए गए हैं।

मुझे एक मंदिर दिख रहा है मंदिर में बहुत सारे लोग खड़े हैं गणेश जी की मूर्ति दिख रही है।

दो मोटरसाइकिल भी खड़े हैं उसके ऊपर हेलमेट पड़े हैं।

होटल सिटी हार्ट भी लिखा गया है श्री राधा मोबाइल मार्केट व्होलसेल रिटेल रिपेयर लिखा हुआ है।

हैंगर में रखे गए हैं कुछ डमी पे लटकाए हुए हैं।

एक कमरा दिख रहा है कमरें में तीन मसाजिंग फूट मसाजिंग कुर्सियां दिख रही है।

और एक बाउंड्री भी दिख रही है बाउंड्री के अंदर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।